तार भी दिख रहे हैं ।

लकड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं बहुत सारे जेंट्स छत पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं लेडीज हैं दिख रही हैं पर --

दिखाई दे रहे है और कुछ झांकी निकलती हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे जेंट्स नीचे खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहा है साइकिल भी दिख रही है बाइक भी --

इमेज दिखाई दे रहा है और केबिन दिख रही हैं और लाइट वाली डोर --

एक मकान दिखाई दे रहा है मकान में --

और दिख रहे हैं नाव भी दिख रही है ।

टेढ़ा है चेयर भी दिख रहे सीलेटी कलर की दिख रहे रेड कलर की दिखाई--

कलर के दिखाई दे रहे हैं ।

भी दिख रहा है और ऊपर बह --